दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है खिड़की भी बनी हुई है।

और यहां पे कुछ सीढ़ियों टाइप की भी बनी हुई है कुछ मकान भी दिखाई दे रहे बहुत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार का कलर व्हाइट और पिंक है यहां पे कुछ पोस्टर वगैरा लगे हुए है और कुछ चेयर भी रखी हुई --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

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ गमले वगैरा रखे हुए है हमे पिंक कलर के फुल भी पेड़ उर भी दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

यहां पे एक मकान दिखाई दे रहा हैजिसकी दीवार का कलर व्हाइट और ग्रीन है यहां पे एक बहुत बड़ा लोहे का गेट लगा हुआ है जिसका कलर ब्लू है यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।